रेलगाड़ी के सीन है यह रेलगाड़ी काफी बड़ा लग रहा है अ--

ये मोबाइल का शॉप है और यहां पे बहोत सारे--

दुकान है जिसने डॉक्टर अन--

तैयार हो रहे हैं इस--

बहुत सारे घड़े भी हैं और ठेले में अंकल कुछ बेच भी रहे हैं।

सामने में बहोत सारी घड़ी भी नजर आ रही है।

ये घर का सीन है और यहां--

जैसे बुलू लाइटिंग है व्हाइट लाइटिंग है गोल्डन लाइटिंग है।

छठ पूजा मनाने के लिए घाट पे जा रहे हैं यहां पे ऊपर में लिखा हुआ भी है छठ एवं कार्तिक --